स्कूल उ ह टेम्पू के चका दिखा छई दुगो बल्ब दिखई छे टेम्पू है बाल्टी के --

एक घ अथी हय पाया देल है पाया है लोहा से घरेल है।

एगो आदमी किताब धइले हई कतई करत छई उजर शर्ट --

बड़ा साजा के रखले सेएत-सेएत के रखले हेय।